ऊपर फैन है तालाब है नीचे छोटा छोटा सा --

यहाँ यहां पे फेन फैंस हैं और ये औरत है इधर।

ये रेस्टोरेंट है वहां पे कुर्सियां है टेबल है।

ए यहां पे अ कुछ कर रहे हैं।

ये डांस कर रहे हैं और पीछे से कुछ लगा के हैं इनको।

लिख के है और यहां से दूसरा आदमी बैठा है।

वहां पे बच्चे खेल रहे हैं यहां पे पानी का प्योरिट नजर आ रहा है और गिलास है पेड़ है।